मंच बना हुआ दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है और आदमी लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े--

लड़के लोग भी दिखाई दे रहे है सीढ़ी दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है और बादल भी दिखाई दे रहा है।

पत्थर दिखाई दे रहा है बड़े - बड़े पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है बादल भी दिखाई दे रहा है बादल जो कि सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

और चारो तरफ परदे लगे हुए दिखाई दे रहे है परदे नीले दिखाई दे रहे है पिंक कलर का दिखाई दे रहा है एक--

ब्रेंच पर बच्चे कॉक शीट रखे हुए दिखाई दे रहै है और एक टीचर दिखाई दे रही है गमला दिखाई दे रहा है चारो तरफ --

जैसा की देख पा रहे है एक नदी दिखाई दे रही है उस नदी में एक शिप दिखाई दे रहा है उस शिप में चारों तरफ --